जैसे की मैं देख पा रही हूँ ये एक क्लोथ स्टोर हैं जॉकी --

जॉकी का जो की अ एक ब्रैंड हैं एक कंपनी हैं अच्छी --

और इसमें कई सारे अंडरगारमेंट्स और क्लॉथ बॉक्सेस दिख रहे हैं।

लिखा हुआ है कि स्वैट इस फैट क्राइम उसी पास है ना एक तस्वीर लड़की लटकी हुई है उसी के पास एक--

कांच की टेबल रखी हुई है ब्लैक कलर की उसके आसपास ब्राउन कलर की लाइंस बनी हुई है।

जैसा की हम देख पा रहे हैं एक स्टेज बना हुआ है उस पे जो पीछे की दीवार है वह व्हाइट कलर के परदों से सजी हुई है ऊपर जो है ब्लू कलर के भी परदे भी लगे हुए हैं ।

आ जो डॉक्टर के पास है वो एक बूंद रखी हुई है उनकी रेड कलर की टेबल पर--

एक बज कर पांच मिनिट हो रखी हैं उसी के पास एक बोटल रखी हुई है पानी की।

और आं उस ऊपर ही एक पंख लगे हुए हैं जो ब्लैक कलर के छपरा बना हुआ है उसके ऊपर पंख लगे हुए हैं जो की--

अम ऑक्सीजन सिलेंडर से लगा हुआ है उसके ऊपर का एक हमें अह बॉक्स दिख रहा है।

ब्‍लैक कलर की बिल्डिंग है जिसपे भी ब्‍लू कलर के मिरर्स लगे हुए हैं नीचे की ओर हमें काफी सारी घासें दिख रही हैं और सामने हमें एक स्‍टैंड दिख रहा है।

जैसे की हम देख पा रहे हैं दिन का समय हैं धुप निकली हुई हैं और हमें कुछ --

उसके पीछे ही हमें एक बिल्डिंग दिख रही है वाइट कलर की और पास एक --

और छोटी सी चेयर दिख रही हैं दो बाइक्स खड़ी हुई दिख रही है जिसके पास एक आदमी--

ऊपर की और टेरेस भी हमें दिख रहा हैं दिवार पर हमें येल्लो कलर का पोस्टर दिख रहा हैं जिस पे कुछ लिखा --

जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये एक रेड कलर का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है।

जैसे कि हम देख पा रहे हैं यह एक नाई की शॉप है यहां पे कटिंग चल रही है एक आदमी एक आदमी की कटिंग कर रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये एक मैरिज होम की पिक्चर है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये एक रेस्टोरेंट की पिक्चर दिख रही हैं यहां पे कुछ --

जैसा की मैं देख पा रही हूं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है पैनासोनिक की जहां पे बहोत सारे एल_ई_डी लगे हुए हैं।

और दिख रहा हैं ऊपर उसके लाइट का फोकस पड़ रहा हैं --

ब्लो हॉर्न का जो लिखावट है वो हमें उसके दरवाजे के पीछे दिख रही है ऊपर ये अ ग्रीन और रेड कलर के फूल भी उसपे सजावट हुए हुए है और --

कम से कम कैरेट अह शलगम बैंगन खीरा लौकी।

फ्रॉक्स हैं शॉर्ट स्कर्ट्स हैं कुर्तिज हैं मैक्सीज हैं।

उसमे कई सारे जैकिटस रखी हुई हैं कुछ लोग हना शॉपिंग कर रहे हैं ब्राउन --

और ये एक गार्डन की पिक्‍च दिख रही है जहां पर एक आदमी चलता हुआ आ रहा है ऊपर से लाइटिंग्‍स फोकस दे रही है और दो सोफा --

और पिंक कलर की अ बाय साइड बाय साइड सजावट हुई वी हैं।

जैसा की मैं देख पा रही हूं दिन का समय है और यहां एक कंट्रक्शन का काम चल रहा हैं जहां पर।